एक कंस्ट्रक्शन साइट है और सामने जो सेंटर दिख रहा है उसमे सेफ्टी आइटम हैं।

गारमेंट की दुकान है और एक बंदा बैठा हुवा है आगे सामने कुर्सियां लगी हुई है।

पार्क है पार्क के सामने गेट है और आसपास में बहुत सारे पेड़ है।

बहुत सारा फुल लगा हुआ है पार्क में कुछ लोग टहल रहे है कुछ लोग आपस में बाते कर रहे है और असमान जो है बिलकुल स्काई का है |

ये कोम्प्यूटर फैसिलिटी की दुकान है जिसका प्रेरणा जी.एस.टी. एकाउंटिंग सोल्यूशन नाम है।

यह सड़क है सड़क अ एक भवर परिसर को जा रही है है सरकरी भवर हो सकती है।